जिसमें बड़े छोटे बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर सूर्य की थोड़ी रोशनी--

इस जगह पर सामने एक बहोत बड़े रेस्टोरेंट है।

यहां एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

एक महिला दिखाई दे रही है।

इस जगह पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

सामने एक स्टूल भी रखा हुआ है जो नीले रंग का है सामने एक सफेद रंग की मेज भी रखी हुई है।

सामने एक एल_ई_डी लगी हुई है नीचे एक लैपटॉप है।

यहां पर सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो एक औरत से बुक ले रहा है।

पीछे एक पुल दिखाई दे रहा है जो लाल रंग का है।

यहां पर बहुत सारी कुर्सियां और सफेद रंग की मेज है।